यहाँ एक जिम हैं । काफी बड़ा है। और यहाँ पे बहोत सारे लाय्टिंग लगाये हुए हैं और देखने में भी काफी सुन्दर और साफ़ सफाई रखे हुए हैं । हरेक प्रकार का एकसरसाइज करने के लिए मशीने लगाये हुए हैं ।

और ये हेयर स्टाइल भी काटा जाता है बालों का और एक पल्सर गाड़ी खड़ा है दो साइकिल है बच्चे है।

यह एक शोपीस की तरह देखने में लग रहा है । काफी ज्यादा अच्छा और सुन्दर भी है ।

मास्क लगाए हुए हैं लड़के भी मास्क लगाए हैं टीचर भी मास्क लगाए हैं और बोर्ड में कुछ बता रहें हैं। बहुत ही अ --